नमस्कार ! creating curved geometry in openfoam पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं आपको दिखाउंगी
ओपन फोम में curved यानि वक्रीय geometry बनाने के steps
paraview में परिणामों को देखना
इस tutorial को record करने के लिए
मैं उपयोग कर रही हूँ linux operating system ubuntu version 1004 openfoam version 210
paraview version 3120
हम एक सिलिंडर पर फ्लो के लिए ज्योमेट्री बनाएंगे
ध्यान दें कि मैं यह केस केवल समझाने के लिए उपयोग कर रही हूँ
वो सिलिंडर एक अर्धवृत्त की फॉर्म में है
meshing एक बॉडी फिटेड ग्रिड है
सम्पूर्ण ज्योमेट्री ब्लॉक्स में विभाजित की गयी है
हम अर्धवृत को समान भागों में विभाजित करते हैं
इसे मिनिमाइज़ करें
पिछले ट्यूटोरियल की blockmeshdict फाइल खोलें
मैंने इसे पहले ही खोल लिया है
नीचे जाएँ सरल ज्योमेट्रीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि edges को खाली रखा गया है
अब एक नयी blockmeshdict फाइल बनाते हैं
यह करने के लिए पहले इसे मिनिमाइज़ करते हैं
अब राइट क्लिक करें > create document > empty file पर क्लिक करें
इसे blockmeshdict नाम दें
ध्यान दें यहाँ m और d बड़े अक्षर में हैं
इसे खोलें
अब आप lid driven cavity से शुरूआती कुछ लाइनें converttometers तक कॉपी कर सकते हैं
ऊपर जाएँ इसे converttometers तक कॉपी करें
इसे कॉपी करें और इसे नयी blockmeshdict फाइल में पेस्ट करें
अब convert to meters को पॉइंट 1 से बदलकर 1 करें
क्योंकि हमारी ज्योमेट्री मीटर में है हम इसे 1 रखेंगे
अब एंटर दबाएं एक बार फिर एंटर दबाएं
इसके बाद आपको vertices में ज्योमेट्री के निर्देशांकों को प्रविष्ट करना है
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ ध्यान दें चित्र में प्रदर्शित की तरह पॉइंट्स का क्रम इस तरह से होना चाहिए कि 0 1 2 3 4 से शुरू करके आगे तक
स्लाइड को मिनिमाइज़ करें अब blockmeshdict फाइल में टाइप करें vertices और एंटर दबाएं
ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
अब चित्र में प्रदर्शित की तरह ज्योमेट्री के निर्देशांक प्रविष्ट करें
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
समझाने के लिए मैं अर्धवृत का दाँया आधा भाग उपयोग करुँगी
0 से शुरू करके चित्र में पॉइंट्स के लिए वैल्यूज़ प्रविष्ट करें
अब मैं blockmeshdict फाइल पर वापस आती हूँ
कुछ जगह छोड़ें और पॉइंट 0 के निर्देशांक प्रविष्ट करें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं और प्रविष्ट करें 05 space 0 space 0 एंटर दबाएं
दोबारा कुछ जगह छोड़ें ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
पॉइंट के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें 1 space 0 space 0 एंटर दबाएं
अब दो ऊर्ध्वाधर स्थान छोड़ें दोबारा एंटर दबाएं दोबारा एंटर दबाएं
कुछ जगह छोड़ें और पॉइंट संख्या 4 के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं प्रविष्ट करें 0707 space 0707 space 0
एंटर दबाएं कुछ जगह छोड़ें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं पॉइंट 5 के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
प्रविष्ट करें 0353 space 0353 space 0 एंटर दबाएं
अब चार ऊर्ध्वाधर स्थान छोड़ें और पॉइंट संख्या 9 के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
1 2 3 4 दोबारा एंटर दबाएं कुछ जगह छोड़ें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
प्रविष्ट करें 0 space 1 space 0 एंटर दबाएं
कुछ स्थान छोड़ें
पॉइंट संख्या 10 के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं 0 space 05 space 0 एंटर दबाएं
उसी प्रकार ज्योमेट्री में बचे हुए पॉइंट्स के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
दोबारा एंटर दबाएं अब टाइप करें blocks एंटर दबाएं
एक ओपन ब्रैकेट लगाएं एंटर दबाएं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
चित्र में प्रदर्शित की तरह block numbers वृत में हैं
अब मैं blockmeshdict file पर वापस जाती हूँ
कुछ स्थान छोड़ें
अब block का प्रकार प्रविष्ट करें जोकि hex है कुछ स्थान छोड़ें
अब ब्लॉक्स के लिए पॉइंट्स प्रविष्ट करें
ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
कुछ स्थान छोड़ें simple grading को 1 1 1 रखा जा सकता है और एंटर दबाएं
ब्लॉक्स बनाने के लिए creating simple geometry in openfoam ट्यूटोरियल को देखें
ध्यान दें इस उदाहरण में ब्लॉक्स की संख्या अधिक होगी
अब क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं दोबारा एंटर दबाएं
अगली लाइन में टाइप करें edges और एंटर दबाएं
एक ओपन ब्रैकेट लगाएं और एंटर दबाएं
यहाँ आपको वो पॉइंट्स प्रविष्ट करने हैं जो आर्क्स यानि छापों के अंत पॉइंट्स हैं
कुछ स्थान छोड़ें और टाइप करें arc कुछ स्थान छोड़ें चाप के अंत पॉइंट्स टाइप करें
अब मैं स्लाइड पर वापस जाती हूँ अब चाप के अंत पॉइंट्स प्रविष्ट करें
इस चित्र में हम चाप 0 5 से शुरू करते हैं
अब मैं blockmeshdict file पर वापस जाती हूँ
प्रविष्ट करें 0 space 5
कुछ स्थान छोड़ें ओपन क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
ब्रैकेट में दो छापों के बीच में कोई भी मध्यवर्ती निर्देशांक प्रविष्ट करें
अब मैं दोबारा स्लाइड्स पर आती हूँ
चित्र में आप देख सकते हैं कि आपको चाप के दो अंतिम पॉइंट्स के बीच का पॉइंट लेना है
इस ज्योमेट्री में मैंने वृत्त का दाँया आधा भाग लिया है
सरल ज्योमेट्री सम्बन्ध उपयोग करके आप अर्धवृत्त में दिखाए गए की तरह मध्यवर्ती निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं
उसी प्रकार आप शेष अर्धवृत्त ज्योमेट्री के लिए प्रक्रिया दोहरा सकते हैं
अब मैं blockmeshdict file पर वापस जाती हूँ
enter दबाएं
ध्यान दें कि इस उदाहरण में बहुत से चाप हैं
एक क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
सेमीकोलन लगाएं एंटर दबाएं दोबारा एंटर दबाएं
अब छापों के बाद boundary patchs प्रविष्ट करने हैं
boundary patches प्रविष्ट करने के लिए openfoam में सिम्पल ज्योमेट्री पर ट्यूटोरियल देखें
boundary टाइप करें एंटर दबाएं
ओपन ब्रैकेट लगाएं एंटर दबाएं क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं सेमीकोलन लगाएं एंटर दबाएं
दोबारा enter दबाएं
अब अगली लाइन में टाइप करें mergepatchpairs
ध्यान दें यहाँ p बड़े अक्षर में है
enter दबाएं
ओपन ब्रैकेट लगाएं एंटर दबाएं
चूँकि मर्ज करने के लिए कोई भी पैचेज़ नहीं हैं इसे खाली रखा जा सकता है
एक क्लोज़ ब्रैकेट लगाएं
एक सेमीकोलन लगाएं और एंटर दबाएं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ
उसी प्रकार चित्र में प्रदर्शित की तरह ज्योमेट्री की यूनिट चौड़ाई के अगले पृष्ठ में पॉइंट्स के लिए निर्देशांक प्रविष्ट करें
अब एक कमांड टर्मिनल खोलें
कमांड टर्मिनल में अपने केस के लिए टाइप करें path
मैंने flow over cylinder ट्यूटोरियल के लिए path पहले ही सेट कर लिया है
टर्मिनल पर ज्योमेट्री मैश करने के लिए टाइप करें blockmesh और एंटर दबाएं
meshing पूरी हो गयी है
अब टर्मिनल पर टाइप करें parafoam और ज्योमेट्री देखने के लिए एंटर दबाएं
अब इसे कैप्चर एरिया में लाएं
object inspector menu के बायीं तरफ apply पर क्लिक करें
paraview विंडो में दिखाए गए की तरह ज्योमेट्री बनेगी
object inspector menu पर नीचे जाएँ
mesh फील्ड बॉक्स को चेक या अनचेक करें
आप ज्योमेट्री के भिन्नभिन्न क्षेत्र देख सकते हैं
आप ज्योमेट्री का wire frame भी देख सकते हैं
active variable control menu के ऊपर ड्राप डाउन मेन्यू में surface को wireframe करें
आप ज्योमेट्री का wireframe model देख सकते हैं
इसे बंद करें अब स्लाइड्स पर वापस आएं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: एक कर्व्ड वक्रीय ज्योमेट्री बनाना
openfoam में कोरों के लिए पॉइंट्स प्रविष्ट करना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
नियत कार्य में 2 मीटर त्रिज्या का एक भीतरी अर्द्ध वृत्त और 4 मीटर त्रिज्या का एक बाहरी अर्द्ध वृत्त और ज्योमेट्री को paraview में देखें
इस url पर उपलब्ध वीडियो देखें: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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spokentutorialcom पर लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल्स टॉक टू अ टीचर का हिस्सा है
यह भारत सरकार के mhrd के ict के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद